पीछे के साइड में बहोत सारे घर बने हुए है इसमें बहोत सारे शीशे लगे हुए--

ऊपर मे देखेंगे तो बहुत ही अज्जा डिजाइन किया गया है। अगल बगल में पेड़ पौधे जो कि बहुत ही सुंदर अच्छे और हरियाली टाइप के दिखाई दे रहे हैं।

इधर साइड में बहुत सारे पानी भी हैं और ऊपर के साइड में दो तीन आदमी भी खड़े हैं।

उधर में एक ठो डस्टबिन भी रखा हुआ है और सामने की तरफ बहोत सारे हरे हरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे--

फिगर दिखाया जा रहा है। कि बहुत सारे मॉडलस के नए नए बाइक लगे हुए हैं। जहां तक पता चल रहा है कि यह एक शोरूम का पिक्चर है।

और यहां पर एक स्कॉर्पियो का भी धुलाई हो रहा है धोया जा रहा है और दो यहां पर और भी कार्स लगे हुए हैं धोने के लिए--

जो घर है वो दो ताला घर है और आगे के साइड में एक पेट्रोल पंप का बहुत ही बड़ा सा हम लोग का निशानी लगा हुआ है कि यहां पर पेट्रोल पंप है।

और सबसे बीच में दो कि दो मेन गेट दिखाई दे रहे हैं एक नीचे गेट लगा हुआ है जोकि ग्रिल दिखाई दे रहा है।

ऊपर के साइड में बल्ब भी जल रहे हैं इधर के साइड में हम लोगों का एयर फाइबर भी लगा हुआ है।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

यहां पर लगता है कि टेबल लगा हुआ है सामने के साइड में जो व्हाइट कलर का है। पीछे के साइड में दो ठो आदमी भी खड़े हुए हैं।

और रस्ता के यहां पर आगे के साइड में मेन गेट के उपर ही मूर्ती लगा हुआ है अगल बगल सभी जगह मूर्ती लगे हुए हैं।

जिस साइड में एक ठो मेन गेट है जो मेन गेट है वह रेड कलर का बना हुआ है आगे के साइड में और यह बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन से कुछ कुछ बनाये गये है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है।

इस फिगर दिखाई दे रहा है की एक क्लिनिक है क्लीनिक के अंदर बहुत सारे मशीन्स भी लगे हुए हैं यहां पर एक आदमी है जोकि ग्लव्स पेहना हुआ है देखकर लगता है की यह एक डॉक्टर है।

अ चारों तरफ जो सीसे लगे हुए हैं ओ सारे के सारे जाली से कव--

बहुत सारे देख सकते हैं कि यहां पर प्राइज भी रखे हुए हैं मेडल भी रखे हुए हैं।